यह तीनों लड़के मोबाइल से दर्पण के सामने खड़े होकर सेल्फी ले रहे हैं।

दीवाल पर दो लाल रंग के बोर्ड लगे हुए हैं।

बकुले की नोक भी पीले रंग की हैं जब की बकुला काले रंग का है।

ऊपर लिखा है जय गौ माता जय गोपाल।

लड़के ने चश्मा लगाए हुए हैं और सर पर काले रंग की टोपी पहने हुए।

एक मकान की छत पर बहोत सारे लोग बैठे हुए हैं।

हॉल में कई सोफे पड़े हुए हैं।

उनमें से कुछ ने काले रंग की टी-शर्ट और एक ने सफेद शर्ट पहने हुआ है।

ये राजकीय पॉलिटेक्निक ललितपुर की बिल्डिंग है।

मकान के सामने दो मोटरसाइकिल खड़ी हुई हैं।

दुकान में रोज यूस प्रयोग होने वाली सारी वस्तुएं हैं।

बाहर सामने एक लाल रंग की मोटरसाइकल खड़ी हुई है।